साइड में कुछ दुकाने भी मुझे इसमे नजर आ रही हैं।

छे घर दिख रहा है जिसमें क्रीम कलर का पेंट हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे कुछ लड़कियां और लड़के दिखाई दे रहे हैं जो की खड़े हुए हैं।

कुछ पंखे इसमें लगे हुए हैं कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

कुछ पंखें नजर आ रहे हैं जो कि व्हाइट कलर के हैं।

बाहर की साइड एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक कार बन रही है जोकि रेड कलर की है।

कुछ गमले भी यहां रखे हुए हैं।

जो छत है इसकी वो रेड है।

इसमें कुछ घांस भी मुझे नजर आ रही है पीछे कुछ कपड़े रक्खे नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

तथा इसमें कुछ लाइटें जल रही हैं जो कि येलो कलर की जल रही हैं।

यह किसी रेस्टोरेंट कि पिक्चर है जिसमें टेबल और चेयर रखी दिखाई दे रही है।